और यहाँ(hit) पे पानी बहते हुआ दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे है कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक लम्बी सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पे बहोत सरे बड़े-बड़े खम्बे लगे हुए है उसमे लाइट भी लगे हुए है।

यहा पर एक बड़ा सा घर बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसका गेट नीले कलर से पेंट हुआ है--

और यहाँ पे इस दो स्कूटिया रखी हुई है एक बाइक रखा हुआ है और यहाँ पे दिवार में कुछ -कुछ लिखा हुआ है।

वाइट कलर से पैंट हुआ हैं और एक बड़ा-सा पेड़ दिख रहा हैं और पीछे एक बड़ा-सा टावर जैसा बना हुआ दिख रहा हैं और यहाँ पे एक बिल्डिंग भी बना हुआ हैं।

एक बड़ा सा कमरा दिख रहा है जहा पे गुब्बारा लगा हुआ है हरा संतरा और सफ़ेद कलर का और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है ऊसके ऊपर एक पानी बोतल भी रखा हुआ है।